आगे की तरफ बहोत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे पौधे गमले में लगाए गए हैं।

सामने में एक रेलवे प्लेटफार्म का पीछे का दृश्य देख पा रहे हूं।

उसके सामने में एक ऑटो देख पा रही हूं।

आगे की तरफ मैं एक चैनल गेट देख पा रही हूं और उसके बगल में दो खिड़कियां हैं।

उपर बहोत सारी लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है।